हमें और उसके बाहर एक ट्री लगा हुआ है छोटा जैसा।

कर रहे हैं और इनके पीछे भी पांच आंटियों बैठे हुए--

और काफी सारे घास उग ऊगा हुआ है।

और यहां पर आगे गेट भी है जिसकी छत रेड कलर की है और इसके साथ में नीचे एक घर भी है जिसकी छत रेड कलर की है।

और यहां पर इतना बड़ा लोगो लगाया गया एस_बी_आई का।

पाइप से और इसके साथ में यहां पर तीन पोस्टर लगे हुए हैं पिंक कलर का एक और एक ब्लैक कलर का --

उसके साथ में एक पीपल का पेड़ है और इसके साथ भी तो एक पीपल पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं।

ये फैन चौबीस घंटे चलते ही रहते है।

ये फ्लोर बिल्कुल व्हाईट है और इसके पीछे एक--

और इसके बिलकुल पीछे कैमरा भी एक लगा हुआ है और उसके नीचे ही एक बड़ा सा स्पीकर है।

जिम का समान हम घर पे यहां पर जिम जैसा महसूस कर सकते हैं और काफी अच्छा हमारा यहां पर वेट भी लॉस हो सकता है।